मेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़े से मैदान में हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं और बहोत सारे --

बहुत सारी बिल्डिंग है और उसके साइड में एक पंजाब बैंक है जिसके सामने एक व्यक्ति फोन पर बात कर रहा है।

यहाँ पर आपको एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है जो काफी कलरफुल है उसके नीचे छोटी सी फॉरचुन की दुकान है |

जो बहोत ही अच्छी है इसके किनारे-किनारे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की --

ये नाइट का फोटो है।

ने कागजों के साथ खड़े हुए है और --

झूमर वाले फूल भी यहाँ पर लगे हुए हैं जो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं यहाँ पर लंबी-सा --

इस रूम में आपको एक बड़ा सा टेबल दिख रहा होगा और उसके किनारे चेयर के ऊपर बहुत सारे लोग --

और यहाँ पर एक कर्मचारी जिसने गले में रुमाल बांधकर --

आसमान गहरा नीले कलर का और बादल छाए हुए हैं।

साइकिल वाला आ रहा है और दो --

ये होटल लग रहा है किनारे-किनारे छोटे-छोटे प्लांट्स --

मेज किसी सामूहिक कार्यक्रम का दिखाई दे रहा है जहाँ पर स्टेज पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है।

इसे चाशनी में से डुबाकर निकाल कर कढ़ाई --

खड़े हैं और यहाँ पर बाइकें और कार भी दिखई दे रही होगीं ये किसी बस्ती से दूर --

यहाँ पर दो पुलिस वाले भी एक साथ खड़े हुए बातें कर रहे हैं।

इमेज में आपको एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है हॉल जो --

और ये कफी (काफी) टूटी-फूटी सी है यहां पे सारें टाइले ।